और पेट्रोल्स में बहोत भीड़ है बहोत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए है जो पेट्रोल डला रहे है।

इस चित्र में ये हॉस्टल का लग रहा है जहां पर--

क्रिसमस और नए साल का बहोत बहोत मुबारक हो यानि कि चित्र मे दे--

और दिखने में काफी सुंदर नजारा लग रहा है।

एक लड़की योगा आसन करते हुए नजर आ रही है जिसका--

इस चित्र में एक लड़की दिख रही है जोकि अ रेड का सूट पहेन कर--

और अंदर में काफी सुंदर लग रहा है रेस्टोरेंट बाहर से देखने से--

बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर जो काफी अच्छा दिख रहा है और इवनिंग का नजारा लग रहा है मुझे देखने से--

काफी दिखने में सुंदर नजारा अलग है।

और काफी टेस्टी लग रहे हैं देखने से।

और ब्लैक कलर की थाली है दो चम्मच है उसमें मिर्ची भी है नींबू भी है।

चित्र में जिम का लग रहा है जहां पर--

जहाँ पर ग्लास के नीचे रेड कलर का बॉर्डर हैं।

में काम सीख रहे हैं सब लोग--

सामने एक कपड़े का शोरूम दिख रहा है जहां पर चार स्टैचू हैं।